अब जैसा थीम दिखाया गया है जिसमें पीछे सूर्य--

सामने में कुछ गार्डन जैसे दिखाई गई हैं उसके समाने वाइट कलर का कुछ रखा हुआ दिखाया गया है।

और सामने में जो लैपटॉप लगा हुआ है उसमें कुछ म्यूजिक सिस्टम से कुछ ये--

पर्पल कलर में कुछ दिखाया जा रहा है रेड कलर में भी और वाइट कलर के बौ--

चार लड़के और एक लड़कियां दिखाई जा रही है चार लड़के का सारे के सारे कंप्यूटर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं सामने का--

मरून कलर का टी-शर्ट पहनी हुई है पिंक कलर का क्लचर लगा--

है सामने में एक डायरी जैसा कुछ रखा हुआ है उसमें ब्लैक और व्हाइट कलर का टीशर्ट पहने हुए एक लड़के की पिक्चर को दिखाया गया है जिसमें अमेरिकन साइड आउट कुछ ब्लैक --

इंग्लिश में लिखा हुआ है जिसमें ब्लू व्हाइट और बीच में रेड कलर का हॉलमार्क का सिंबल भी दिया गया है।

एक बस के अंदर का पूरा अ बैकग्राउंड दिखाया गया है जिसमें--

कवर जैसे लगे हुए हैं ऊपर में कुछ हॉल जैसा कुछ दिया हुआ है जिसमें--

फूल रेड कलर का फूल हैन्ड शर्ट पहने हुए हैं और स्लिपर भी पहने हुए जीन्स पहने हुए हैं एक आदमी--

पटरी के नीचे से सर झुकाए हुए हाथ में हथौड़ा लिए हुआ है फुल हैंड का शर्ट पहने हुए एक गमछा बांधे हुए सर--

कोई मछली शॉप जैसा कुछ टूरिस्ट वैसा एरिया जैसा दिखाया गया है एक लेडी --

कपड़े जैसी है जो दोनों हाथों से घिस कर के वो क्लीन करते हुए फोर व्हीलर दिख रहे हैं सामने में एक आदमी दिख रहा है जो कि--

ये शॉप को दिखाया गया है यहां पे बहुत सारे सामानें दिखाई जा रही हैं जैसे कि शैंपू फेस वॉश पाउडर शैंपू सैशे वगैरह दिखाई गई है स--

परफ्यूम भी दिखाया गया है पाउडर्स वगैरह है बहुत सारी सामान चीजें घर की ग्रोसरी की सामान दिखाई जा रही है सर्फ वगैरह है ऑइल हैं।

हां गंदा सा टी शर्ट पहने हुए वो हाफ ट्राउजर पहने हुए जोकि उठाए हुए ग्रीन कलर का स्लीपर पहने हुए सामने में--

एक गार्डन जैसा कुछ दिखाया गया है जहां किसी चीज़ का स्टैचू है जो कि स्काई कलर का कुर्ता टाइप का पहना हुआ है एक सामने में खंभा दिखाया गया है।

जिनमें बहोत सारे पेड़ पौधे दिखाया जाए सामने में गार्डन एरिया में घास ग्रीन ग्रीन दिखाया गया है कुछ मिट्टी--

ये दिखाई गई है बहुत सारे कुछ पेड़ के पत्ते येलो से दिख रहे कुछ डीप ग्रीन दिख रहे हैं ऊपर में आसमान दिखाया गया है कुछ पक्के--

पेड़ पौधा लगा हुआ है जिसकी पत्ती के केले के जैसे दिख रही है पीछे साइड से आसमान--

और ये बहुत सारी चेयर लगी हुई है बहुत सारे लोग बैठे हुए जिसके फेस को हाइड किया गया है।

कीचड़ जैसा गंदा सा पानी कुछ लोग स्कूटी चलते हुए ऑरेंज कलर के साथ--